घर है यह घर काफी बड़ा है यह घर के किनारे छोटे-छोटे पौधे भी हैं इस घर के किनारे खम्बे भी हैं यहाँ बिजली के तार भी है यहाँ बड़े-बड़े पेड़ भी है।

ये बिल्डिंग का गेट काफी बड़ा है यहाँ पर ग्राउंड भी है यहाँ पर अनेक सारे घर भी है।

ये एक क्लिनिक है ये क्लीनिक में बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पर पेशेंट आए हुए हैं डॉक्टर पेशेंट को देख रहे हैं यहाँ पर एक औरत है वह दवा वहाँ पर काउंटर पर बहुत सारे दवा रखे है वो पेशेंट को दवा दे रहे हैं।

एक घर है यह घर काफी बड़ा है इस घर को सफेद कलर से पेंट किया गया है इस घर में तीन लगी हुई है यहाँ पर अनेक सारे कुर्सी भी हैं ये कुर्सी लोहे की है यह एंव गद्दे लगी हुई है यहाँ हम घर काफी सुन्दर एवं आकर्षक --

एक सड़क है। सड़क के किनारे मैदान जैसा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लाइन बाय लाइन बैठे हैं। यहाँ पर एक पेड़ भी है। यहाँ पर छोटे-छोटे घर भी है। यहाँ पर सभी बच्चे एक जैसे कपड़े पहने हैं।